और यहाँ पे मत बंद है अभी | यहाँ पे अभी कोई नहीं है।

स्कूटी बाइक की सब का बहुत बड़ा मतलब अ एजेंसी है।

एक गेट है। एक पौ मतलब पेड़-पौधा भी है।

मपाया हुआ सब है पत्थर पे पेंटिंग बना हुआ है।